और उसने सेफ्टी भी पेहेन रखी है और उसके सिर के ऊपर के टोपी लगी हुई दिखाई दे रही हैं और उसने हाथो मे गलब्स भी पहन रखी है